ऊपर बहोत सारा सामान रखने के लिए केबिन बना हुआ है।

एक बहोत बड़ा पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो ऊपर हरे रंग का है।

और यहां ब जमीन प बहोत सारे पौधे लगे हुए हैं जो हरे रंग के हैं।

यहां पर बहुत सारे रंग के डिब्बे दिखाई दे रहे हैं जिस पर एक पर नैरोलैक ब्यूटी लिखा हुआ है।